के सामने कुछ कारें खड़ी हुई है।

यह एक रूम है जिसमें बहुत सी कुर्सियां व मेज लगाई गई हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा घना जंगल है जिसमें बहुत से पेड़ है।

जो घास खा रही है और टहल रही है।

इसमें एक लड़का जा रहा है सामने ही शीशों के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं।

एक बाइक पर बैठा है जो ऑफिस के अंदर जा रहा है।

इस मकान के बाहर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और नीचे फर्श पर हरे कलर की मैट बिछी हुई है।

यह एक शॉप है जिस पर अली बैक का बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

और एक बड़ा बारकोड लगा हुआ है जिसके पास एक युवक खड़ा है।

कुछ स्लेपे बनाई गई हैं जिन पर बुके रखी हुई है।

सामने ही लाइट लगी हुई है।

यह एक प्रकाश का बोर्ड है जिस पर प्रकाश स्टेशनरी नोटबूक लिखा हुआ है।

जिसमें एक दीवार पर एल_ई_डी लगी हुई है।

जो ग्रीन कलर की है मेज पर एक लैपटॉप पर कुछ किताबें रखी हुई हैं।

जिसमें नीचे टाइलें बिछी हुई हैं।

इस रूम में कुछ आदमी खड़े हुए है और एक लड़की है जिसे ट्रॉफी दी जा रही है।

यह एक मस्जिद है जिसमें लोग बैठे हुए हैं।

और सामने ही व्हाइट कलर के कूलर रखे हुए है।